इस फोटो में हम देख सकते है की--

यह पार्क देखने में बहुत ही सुंदर--

खड़ा दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सुंदर से--

यह एक सुन्दर सा फोटो है जिसमें कुछ सुन्दर से--

यह किसी पुस्तक भंडार का फोटो लग रहा है जहां पर कुछ--

इस फोटो मे हम देख सकते हैं कि यह एक मंदिर का फोटो है और--

पाउच दिखाई दे रहें हैं।

है और कुछ आदमी खड़े दिखाई दे रही--

कुछ बच्चे खेलने के लिए आए हुए हैं।

कुछ कुर्सियां रखी हुई है और--